यहाँ पर जिम सेण्टर बना है यहाँ पर पैदल चलने वाली मशीन रखी है यहाँ पर बैठने वाली और उठाने वाली मशीने रखी यहाँ पर थोड़ा पंखा चलने वाला रखा है।

-- और उसने बगल में नीले कलर की पेंटिंग हुई है वाइट कलर का निचे सरा है सफ़ेद सफ़ेद है बहुत अच्छा लग रहा है रंगबिरंगी अचार रखे है यहां पे बहोत अच्छा दिख रहा--

यहाँ पर मारुती सेण्टर बना है यहाँ पर थोड़े सफ़ेद सफ़ेद बादल दिख रहे--

उसके ऊपर वाले जंगले मे चार पाँच वो खिड़कियाँ वाली बनी है और उसके बगल मे एक कुर्सी रखी है उसके नीचे हरे कलर का वो कलर। --

वह पैसे बनाने की मशीन भी रखे है और उसके नीचे एक शिष्या लुड़की है और वहाँ पर एक बोहत बड़ा वॉर दिख रहा है धुंदला धुंधला सा और काले कलर का हु कलर दिख रहा है।

नीचे कुर्सियां रखी है टेबल भी है बैठे के यहाँ खाना खाये और सफ़ेद कलर की लाइट लगी है और बो-बो नमक वाला वो दिखा रहा है और पाव भाजी--

इसके बगल में वो कुर्सी टेबल रखी हुई है उसके बगल में एक आदमी दिख रहा है उसके बगल में वो मुझे पीछे बोहत बड़ी बड़ी बिल्डिंगे दिख रही है।

यहाँ पर मुझे बिल्डिंग दिख रही है जहा अटल बिहारी जी बनुपयोजी शिबलाल भी लिखा है वहाँ पर सफ़ेद कलर का वोओ कलर पुता है।

बगल में सफ़ेद वारा बिल्डिंग बना हुआ है उसके बगल में उ दरवाजा दिख रहा है उसके नीचे कचड़ा भी दिख रहा है वहा पर साफ सफाई बिलकुल नहीं है पानी भरु है का मालूम कैसे--

कलर दिख रहा है वहा पर दो लुगाई दिख रही है उसके बगल में दो शेर दिख रहे है वहा पर नीला वाला वो पुता है उसके ऊपर वो मन--

यहां पर वो ईस्क्रूट्री धरी है उसके बगल में वोओ कार धरी है सफेदवाली उसके ऊपर नीला -नीला बादल छाए है उसके बगल में वो नीले वाले छोटे -छोटे खम्भे खड़े है वहा पर--